इस फोटो में मुझे सड़क दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गाड़ियां दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे कुछ दुकानों की शटर बंद दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे लाइटर दिखाई दे रही--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

इस फोटो में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे आदमी औरत नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे मुझे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे लोहे की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे सोफा सेट और कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे मुझे एक गार्ड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कुछ भी बाईकें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा पोस्टर दिखाइ दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है इस फोटो में मुझे लाइटे दिखाई दे रही--